इसमें हमें बहोत सारी कबूतर--

देखने से यह तस्वीर हमें किसी बैंक --

बस का दृश्य लग रहा है।

उसमें हमें दो ब्लॉक भी नजर आ रहे हैं।

इसमें पूरी लाइटे लगी हुई दि--

तस्वीर हमें एक पेट्रोल पंप --

की तस्वीर नजर आ रही है।

देखने से यह तस्वीर--

इसमें हमें बहोत सारी कांच की बोतले पड़ी दिख--